बुक्स रखी हुई है बुक सेलर बैठे हुए है पीछे की तरफ--

आरती टिन नाव ग्रीन और वाइट कलर की है दो नाव रेड एंड येलो कलर की है।

कुछ व्हाइट कलर के है कुछ येलो कलर और ग्रीन कलर के है।

बच्चे कुछ आर्टवर्क कर रहे हैं आ दीवार पर विंडो बनी हुई है।

बाहर पानी की बॉटल्स रखे है कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखे है खाने की चीजों के पैकेट टंगे हुए हैं।

रस्सी पर अलग-अलग कलर की धागों की राखियां टंगे हुए हैं।

इमेज़ में पार्क है पार्क में स्टैचू बने हुए हैं सभी स्टैचू--

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया का बोर्ड लगा हुआ है लोगों बना हुआ है एक मोबाइल के शॉप हैं।